यहां पे बहुत सारा आलू रखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे हैं।

यह एक मछली मार्केट का चित्र है।

एक टावर लगाया गया है यहां पर बहुत सारे आदमी भी हैं।

यहां पे एक पेटीएम बहुत बड़ा स्कैनर रखा हुआ है।

दो स्कूटी भी रखा हुआ है जिसका कलर सफेद है।

यहा पे हरा रंग का लोहे का जाली लगाया गया है।

नीचे में लाल और हरा रंग का मैट बिछा हुआ है इस घर में पूरा ही लाइट लगाया गया है।

इस घर का कलर सफेद है।

इस पे स्टैंडर्ड वॉशिंग एंड सर्विस सेंटर लिखा हुआ है।

यहां पे बहुत गमला रखा हुआ है।

चेयर पे एक महिला बैठी हुई है महीना महिला ने लाल कलर का ड्रेस पहन रखा है।

यह एक जिम के अंदर का चित्र है।